यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मछली है यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक मछली खरीदने के लिए आये हुए है ये मछली काट के देते है।

यह एक सरकारी स्कूल है यह सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यह सरकारी स्कूल में फाइव कक्षा तक की पढ़ाई होती है ।

सी.यू.बी. ए.टी.म. हैं। यहाँ पे ए.टी.म. से पैसे निकलने के लिए आदमी आए हुए हैं। यह ए.टी.म. में पैसे निकालने के लिए बोहोत सारे आदमी आए हुए हैं। काफी सारे आदमी की भीड़ यहाँ पे लगी हुई हैं।

यहाँ पे अच्छे दाम पे समान मिल --

यहाँ खेतो में खेती की गयी हैं। यहाँ धान की खेती की गयी हैं। यहाँ धान रोपे हुए हैं।